यहां पे सीधे में एक और मूर्ति है ब्लैक कलर की.

कुछ एक व्यक्ति पिले कलर में लिख रहा है.

और तीन बालकोनी दिख रहा है।

यह एक हॉस्पिटल का चित्र है जहां पे हमें एक मशीन नजर आ रही है स्कैनिंग मशीन .

साइड में एक अमरूद का पेड़ लगा हुआ है.

यह एक ट्यूशन पढ़ रहे हैं.

यह एक स्कूटी का शोरूम हे.

दो एक आदमी बात कर रहा है फोन में.

जिसके नीचे कुछ कुट कछु के पत्ते भी है.

एक लड़का लाल कलर का टी शर्ट पहन कर दौड़ रहा है.

पंखे के बगल मे एक ऐ_सी लगा हुआ हैं.

साइड में हमें कुछ पोस्टर दिख सकते हैं.

जहाँ पे हमें बहुत सारे जंगली घास दिख रहे हैं.

यह एक कोलकतरा कोलकाता म- महिंद्रा बैंक का चित्र है.

फिर बगल में स्कूटी है.

जहाँ पे हमें दो बड़े बस दिख रहे हैं.

यह एक गुड बोय ओनली का चित्र है.